इनमें बच्चों को काफी सुंदर फैंसी ड्रेसेस पहनाई गई--

यह एक नर्सरी का दृश्य है नर्सरी में काफी भुट्टे लगे हुए हैं।

इसमें काफी मुर्गियां दिख रही है।

इसके पास से कई आदमी इसको खरीद रहे हैं।

ये चर्च की तस्वीर है इसमें चार आदमी पीछे--

एक आदमी बीच में रेड कलर के ड्रेस --

यह एक होटल की तस्वीर है।

फोटो में काफी टेबल्स एंड चेयर्स लगे हुए हैं।

के सामने बस यात्रा के लिए माता वैष्णो जा रहे हैं।

एक आदमी सेल्फी प्वाइंट लेकर कैमरे से--

हरे भरे बूटे पड़े हैं इसमें--

इसके ऊपर आधार दिल्ली लिखा है इसमें--

इन बच्चों ने सेम यूनिफॉर्म पहनी हुई है।

मनियारी के शॉप में काफी बिंदी एंड चूड़ी के बॉक्स भी पड़े हैं।

सामने मिरर में काफी सुंदर हार भी रखे हुए हैं।

इसके ऊपर पिज्जा की तस्वीर भी बनी हुई है।

इसमें सिम के काफी ऑफर्स भी लिखे हुएं हैं।

पार्क के आसपास काफी हरे भरे बड़े वृक्ष हैं।